कॉलेज हाल में पानी का बकेट लगा है।

और फिर जस्ट नीचे रेड कलर की चेयर्स है टेबल्स है।

एक दो स्कूटी दो बाइक एक चलने वाली कार ।

पानी में नाव चल रही है बोट उसपे ये आदमी सवार है एक आदमी उन्हें नाव की सैर लगा नाव की सैर करवा रहा है।

और एक फ्रिज है ये एक केक की दुकान लग रही है।

कुत्ते के आगे लगा हुआ है रेड कलर का बैनर जिसके आगे नहीं जाता।

सीढ़ियां है जिस पर लोग उतर रहे आ रहे हैं जा रहे।

इसमें दो बच्चे हैं लाल कलर का टीशर्ट ब्लैक पेंट ब्लू हेलमेट ।

यह ललित कला अकादमी क्षेत्र केंद्र है।